दृश्य में कार के शोरूम दिखाई दे रही है जहां पे एक कार लगी है जो की ब्लैक कलर की है और इसके गेट पे शीशे लगी है।

इसकी सीलिंग व्हाइट है जिस पे डिजाईने बनीं हुई हैं और लाइट भी लगी हुई है।

एक लेडिस हाथ में थैला लेकर के खड़ी है।

और कुछ चेयर भी लगी हुई है।

आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक लेडिस आती हुई नजर आ रही है।

चेयर लगे हुए हैं और टेबल भी लगी हुई है।

कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

एक लड़के का चित्र छपा हुआ है।

इस दृश्य में एक ऑफिस दिखाई दे रही है जहां पे लकड़ियां की बहुत सारे काउंटर बने हुए --

लाइन की तार भी दिखाई दे रही है।

चेयर भी लगाई हुई है उस पे भी वाइट कलर के कपड़े लगे हुए हैं।